एक आदमी यहां पर खाना खाते भी देख देखने को मिल रहा है।

सामने एक बड़ा-सा मकान देखने को मिल रहा है जो कि ऑरेंज और लाल कलर से पेंट है यहाँ पर एक सीढ़ी भी देखने को मिल रहा है।

यहाँ पे एक औरत और कुछ बच्चे अपना एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहे हैं और दीवाल जो है वो पिंक कलर से पेंट किया गया--

सामने कई सारे बड़े-बड़े मकान भी देखने को मिल रही है और फाइबर भी देखने को मिल रही है जो कि ब्लू कलर है।

सामने एक बहुत बड़ा पोखर देखने को मिल रहा है और यहाँ पर एक मंदिर भी देखने को मिल रहा है।

और बीच में एक गुल्मबर जैसा बना हुआ है जिसमें किसी चीज का एक स्मृति बना हुआ है।

और बहोत सारे लोग भी यहां पर इकट्ठे होकर बात कर--